एक शॉप दिख रही हैं जो अ एक अंकल बैठे हुए हैं प्रिंटर के सामने--

और सामने उसके बहुत सारी बाइकें खुली हुई हैं और इधर उम्म कुछ टैंक जैसा रखा हुआ है।

और कुछ महिलां ओ उसके अंदर जा रही हैं और लाइट जल रही हैं।

मुझे एक बिल्डिंग दिख रही है और उसके नीचे किराना की दुकान है और कुछ बोरियां रखी हुई है और कुछ सामान टंगे हुए हैं।

सौर ऊर्जा के बीच में एक पैनल नहीं लगा हुआ है।

कुछ पर्दा लगा हुआ है और नीचे कुछ चटाई जैसी बिछ रही है।

एक पानी की टंकी दिख रही है जो बहुत बड़ी सी है।

और एक औरत एक आदमी है कुछ ग्रीन कलर का बोर्ड जैसा दिख रहा है साफ नहीं दिख रहा है।

एक बैटरी ऑटो खड़ा हुआ है दो लाइट्स लगी हुई है।